यहा पर हमें एक कपड़ो की शॉप दिख रही है जहा पर सामने ही रेक में बहुत सारे फुट्टे में कपड़े रखे हुए है

उपर लगा हमें एक कैमरा भी दिख रहा है सामने रखी कांच की टेबल पे दो डमी भी दिख रही हे जिनमे फ्रॉक और सूट पैना हुआ है